ये एक बहुत ही सुन्दर हाईवे दिख रहा है जिस पर गाड़ी वगैरह लगे हुए है इसमें बैनर भी है और --

सामान सब है जिसमें जिसमें सीढ़ी झूला भी लगा हुआ है।

गेट वगैरह सब लगा --